एक नाव है जिसमें नाव मे कुछ लोग बैठ रहे है सीढ़िया बनी हुई है अगल-बगल हरे-भरे पेड़-पौधे है बादल नीला है।

अगल-बगल मैदाने है जिसमें हरे घास जमे हुए हैं हरे भरे पेड़ पौधे हैं और बादल नीला और सफेद है।

ए बस खड़ी हुई है स्कूल की बस और मैदाने है जिस मैदानो में हरी घास जमी हुई है अगल-बगल हरे-भरे पेड़-पौधे हैं बादल नीला और सफेद हैं ।

जो मंदिर का निर्माण हो रहा है मंदिर के मंदिर के नीचे सीढ़ियां भी बनी हुई है अगल-बगल मैदाने है मैदाने में हरे घास जमे हुए है हरे-भरे पेड़-पौधे है बादल सफेद है।

आ सामने बड़ा सा मैदान है जिस मैदान में हरे घाँस जमी हुई है हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं फूल भी लगे हुए है बादल नीला और सफेद हैं ।

कुछ पहाड़ी सामने पहाड़ें हैं काले कलर का और मैदान हैं इसके नीचे एक पार्वती पुरम का इस्टेचुउ बना हुआ हैं ।

ग- गमले रखी हुई हैं गमले रखी हुई है अगल-बगल में हरे-भरे पेड़-पौधे हैं बादल सफेद काले--

यह एक मंदिर है जो मंदिर के सामने बड़ा सा मैदान है जिसमें मैदान में हरी घाँस जमी हुई है एक बगल में एक आदमी खड़ा हुआ है अगर अगल-बगल हरे भरे पेड़ पौधे हैं बादल सफेद है।